इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग वाशिंग मशीन खरीदने के लिए जाते हैं यहाँ की वाशिंग मशीन बहुत ही बढ़िया होता है इसीलिए यहीं से माशिंग वाशिंग मशीन लेना चाहिए हम लोगो को भी।

यहाँ पे हर प्रकार के सामान मिलते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं तरह-तरह के सामान मिलते हैं बाजार में तो सब सामान मिलते ही हैं।

यह एक पार्क का फ़ोटो दिखाया गया है इस पार्क में बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं इस पार्क में तरह-तरह के लोग जाते हैं घूमने के लिए यह पार्क बहुत ही अच्छा है और टहलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है कोई प्रकार के बीमारी नहीं होतें हमें हर रोज़ सुबह को टहलना चाहिए।